यहां किसी के बड्डे का सेलिब्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है औ--

ये जस्ट एक रेस्टोरेंट है यहां पे ढेर सारी कुर्सियां टेबल्स रखे हुए हैं टेबल्स पे अच्छे अच्छे फ्लावर्स रखे हुए हैं।

जिम के लिए ढेर सारी कुर्सियां लगी हैं और इधर एक दरवाजा लगा है दरवाजे में कांच लगा रखा है और ऊपर--

व्हाइट शर्ट एंड जींस पहन के खड़ा है नीचे जंजीर में ताला लगा हुआ हैं।

बॉट लगे हुए हैं और चारों तरफ से सराउडिंग टेबल हैं और पीछे कोई सा एक--